इस इमेज में यहाँ घंघोर जंगल दिखाई दे रहा है रेल की ये पटरी दिखाई दे रहे है कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ खंबे लाइट के दिखाई दे रहे हैं।

है रेल की पटरियां और पांच छ: रेल की पटरियां दिखाई दे रही है एक रेल लेकर डिब्बे खुल्ले चल खुल्ले दिखाई दे रहे है।

इस इमेज में यहाँ रेल की पटरी दिखाई दे रहे है लाइट के बहुत सारे खम्बे दिख रहे--

इस इमेज में यहाँ रेल की पटरी दिखाई दे रही है यहाँ एक ट्रेन है खड़ी हुई दिखाई --

आहे यहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है यहाँ ब बहुत हरा-भरा सा लग रहा हैँ।

यहाँ शिवलिंग दिखाई दे रही है मंदिर बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत बड़ी शिवलिंग है काली दिखाई दे रही है इसपे बहुत सारे दूर-दूर तक--

दिखाई दे रही हैं यहाँ डाटा फोर जी हैं बैलेंस डलने वाला दुकान दिखाई दे रही हैं अमन पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

बहुत सारी रेके रखी हुई है उनमे सामान रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ बहुत सारी लाइटें लगी हुई यहाँ --

एक साइड कोचई एलोवेरा जैसे पत्ते निकले हुए दिखाई दे रहे है पतले पतले एक साइड कुछ गुब्बारा हरियाली पौधे जैसे बहुत सारी हरियाली दिखाई दे रही है।

इस इमेज में यहाँ बहुत बड़ा झूला दिखाई दे रहा हैबहुत बड़ा मेला लगा भव दिखाई दे रहा है बहुत सारी जगह पड़ी हुई दिखाई --

इस इमेज में यहाँ बिल्डिंगे दिखाई दे रही है कांच लगे हुए दिखाई दे रहे है यहाँ हरी- भरी दूर्वा दिखाई दे रही है यहाँ बहुत सारी रोडे बनी हुई दिखाई दे --